बगल का दीवाल हरे कलर से रंगा हुआ है।

के दीवारों पे चारों तरफ से टाइल्स लगा हुआ देख सकती हूं।

यहां पे एक गेट लगाया गया है।

नीचे की अलमारी पे बहुत सारे सामान गिफ्ट के रखे हुए भी देख सकती हूं।

पीछे की तरफ दो कुर्सियां लगी हुई भी मैं देख सकती हूं।

उसके बगल में एक टेंपो देख सकती हूँ।

उसने अपने पैरों और हाथों पे आलता लगाया हुआ है।

यहा मैं एक ऑर्फेनेज की बिल्डिंग देख सकती हूं।